'' एक मैम बैठे मुस्कुरा रहे है बच्चे अपना काम डेस्क पे बैठे कर रहे है इन बच्चों के शूज वाइट कलर के है लोवर इनके ब्लू कलर के है ।''

एक स्कूल का फोटो है जहाँ एक रूम मे लड़कियां बैठी हैं एक रूम मे लड़के बैठे हैं ये लोग ड्रॉइंग कर रहे हैं एक लड़की कैमेरे के तरफ देख रही हैं मैम भी मैम ने यलो पहन रखी हैं।

सामने एक आदमी जा रहा है इस आदमी ने वाइट शर्ट और टोपी पहरा है ग्लब्स वाइट है ये धुप में काम रहा हैं।

यहाँ बहुत सारी कुर्सियां है जहाँ पर लोग पंचायत कर रहे है एक छोटी लड़की स्टेज पे खड़ी हुई है और एक फोटोग्राफर भी खड़ा हुआ हैं ।

सबने बैग टांग रखा हैं दो लड़के कुँए से गड्ढा खोद रहे हैं लड़कियों ने टांग रखा है एक सर खड़े होके देख रहे हैं।